पार्क के अंदर पानी थोड़ा सा भरा हुआ है।

सामने भगवान की फोटो है।

इसमें एक बहुत बड़ा गेट है उसकी दीवार सफेद कलर की है।

वहां बहोत से लोग खेल रहे हैं एक फुटबॉल है।